कुर्सी का कलर है ब्लैक और गद्दे में का कलर है रेड और टेबल का कलर है ब्लैक और रेड ।

और दो व्यक्ति है जो एक जिम सीख रहा है।

दीवार का कलर व्हाइट है।

यह एक ग्राउंड है जिसका कलर ग्रीन है।

ऊपर में झूमर भी दिख रहा है।

पीला कलर का है और उसमें हरे पत्ते हैं मैदान है ग्रीन कलर का घास है।

ये घर के बगल में एक पेड़ है।